बत्ती जली हुई है पेंडोल लगा हुआ है।

इस चित्र में एक लड़का झूला झूल रहा है वह झूले पर बैठा हुआ नजर आ रहा है।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

और बाजू में एक बड़ा सा बोर्ड भी नजर आ रहा है।

यह एक क्लासरूम है जहां पर--

बड़ा सा इलेक्ट्रिक का पोल दिख रहा है।

एक टेबल चेयर दिख रही है जहां लोग बैठे नजर आ रहे हैं और वहां रेस्टोरेंट बैलून से सजाया गया है।